यहां पे बहुत सारे गमले में पौधे लगायें गये है।

सामने दीवाल में बहुत सारे फोटो फ्रेम्स लगे हुए है।

टेबल के ऊपर जग रखा हुआ है।

यह एक बहोत बड़ा हॉल का दृश्य दिखाई दे रहा है।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

यहां पे कुछ कुर्सियां भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां बहुत सारी लाइट जलती हुई दिख रही है।

सामने दीवाल में एक इलेक्ट्रिक बोर्ड भी लगा हुआ है।

रास्ते के ऊपर एक ऑटो रिक्शा खड़ी हुई है।

आसमान में बादल छाए हुए दिख रहे हैं।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

यह काफी शांत दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत सारे महिलाएं और पुरुष लाइन लगाकर खड़े हुए हैं।

टीलिंग में बहु कुछ पंखे और लाइट भी लगे हुए हैं।

यहां पे बहोत सारे सब्जियां रखी गई है जैसे जैसे नैनुवा गाजर पपीता लवका इत्यादि--

जिसके बगल में डिवाइडर बना हुआ उसके ऊपर लोहे की जाली लगी हुई है।